यह मछली इतनी बड़ी है या ऐसे ही रिक्शे पर लाया गया है।

प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे।

पेट्रोल से चलने वाली ऑटो है ये तीन पहिये की है ।

इसमें पेट्रोल नहीं लगता --

हम दुश्मनों पर हमला करते थे।

इसके बाहर पार्किंग की सुविधा भी की गई है।

काला काला नजर आ रहा है|

यहां पर लाइट नहीं जल रही --

मिलता है यहाँ पर कुछ पैकेट लटका रखी है।

एक मोमबत्ती उने एक मोमबत्ती रखी हुई चिलम दिखाई दे रही है ।

ईंटों से एक गोल धारा बना रखा है जिससे ये पेड़ सेफ्टी रहे।

कंपनी के अंदर अभी लंच चल रहा है ।

यह दृश्य हमारे सामने एक --